फल की दुकान हे | यह फल की दुकान ठेले में फल रखे गए हे | इस फल में यह दुकान में बहुत ही रंग विरंगे फल मिले जाते हे सेव नारियल केला संतरा एवं मिले जाते हे ।